सामने एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर पर चार डी जे रखे हुए हैं ऊपर में हॉर्न लगाया हुआ है।

वह पैंट पहने हुए हैं एक आदमीन है जो सर पे गमछी बान्हा हुआ है।

सामने बड़े बड़े पहाड़ है नीचे ब्लू पानी है ऊपर बादल छाए--

ऊपर से धूप आ रहा है बगल में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

नीचे छोटे छोटे टेबल रखे हुए हैं बैठने के लिए।

मॉल में कई सारे हैंगर में स्वेटर टांगे हुए हैं जैकट टांगे हुए हैं बच्चा का और बड़े लोग का।

और कल्छुल रखा हुआ है लकड़ी का।

और उसमें बहुत सारे डब्बा रखे हुए हैं चप्पल जूता का चप्पल का और डब्बा में चप्पल रखा हुआ है।

और पेंट किया हुआ है पेंट का येलो कलर का है और रेड कलर का है।

अगल बगल कई सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

कई सारे तारें लगाई हुई हैं बगल में बाइक खड़ा है।